इस चित्र के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति नजर आ रही है जिसके आसपास छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर एक गाड़ियों का शोरूम नजर आ रहा है जिसके साथ ही कुछ दुकाने भी नजर आ रही है चित्र मे सामने दो पहिया वाहन भी खड़े हुए दिख रहे है चित्र मे कुछ मिट्टी भी नजर आ रही है।

इस चित्र के अंदर एक फुटपाथ पे खड़ी हुई कार नज़र आ रही है इसके पिछे एक शेड की दीवार भी नज़र आ रही है पिछे एक खंबा भी दिखाई दे रहा है सात ही एक और कार नज़र आ रही है।

साथ ही कुछ दरवाजे व पर्दे भी नजर आ रहे है दरवाजे के ऊपर माला की सजावट भी नजर आ रही है।

इस चित्र के अंदर के हरा भरा मैदान नज़र आ रहा है। जहा पर कुछ लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पेहनकर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

चित्र के अंदर बहुत सारे दो पय्ये वाहन भी खड़े हुए दिख रहे है साथ ही एक ट ट्रॅक्टर भी नजर आ रहा है चित्र मे बड़े बड़े पेड़ व दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

चाय के कप के ऊपर कुछ तस्वीर भी बनी हुई दिख रही है।

इस चित्र के अंदर एक बड़ा सा मंदिर नज़र आ रहा है जिसके बाहर उसका नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है। चित्र मे कुछ सिडिया भी दिखाई दे रही है उपर साथ मे काच की खिडकिया भी बनी हुई दिख रही है।